एक दम सुभे का टाइम हे और ये हरियाली बहोत ही--

यहां पर एक बिल्डिंग बनी है जो व्हाइट और रेड कलर की है जिसमें बोहोत सारी विंडो लगी हुई है जिनके ग्ला--

आस पास बहुत सारे घने पेड़ हैं और अंदर भी बहुत सारे पेड़ हैं और कुछ घर बने हुए--

यहां पर एक ऑफिस है जो पूरा ही व्हाइट कलर का है और इसमें अलग अलग कैबिन्स बने हुए।

पोस्टर लगे हुए हैं जिन्हें डिजाइन से लगाया गया है और इनके बीच में एक व्हाईट कलर --

रखे हुए निचे की तरफ बहोत सारे वाइट कलर के बॉक्स --

जिसमे इन मग को साइड कर के रक्खा गया है ऊपर की तरफ भी बहत सारे --

यहा पर सामने एक मंदिर है जो वाइट कलर का है यहा पर बहुत सार्री कलर फुल लाइटिंग लगी है ग्रीन रेड --

कुछ टीन सेट भी बना है और जो बाउंड्री है वो लोहे की--

में कुछ रूम्स बने है जो सर्विसिंग एरिया है वहा पर भी बोहोत सारी कार खड़ी हुई है ।

बैलून और झालर से डेकोरेशन किया गया है सामने एक खिड़की है जो खुली है जहां से--

कुछ लोग खड़े हुए है बहोत सारे लोग बैठकर यहाँ पे कुछ--

ये बहोत ही पुरानी है इसमें कही कही पर जंग आ गयी है और आसपास बहोत सा--

और पीछे की तरफ बोहोत सारे कार्टूनस रखे है सामने दूसरा भी ब्लैक कलर का सामान रखा --

यहां पर एक डी_पी लगी हुई है ये एक पावर ऑफ --

यहाँ पर बहोत सारी वाइट कलर की बड़ी मशीने रखी--

यहा पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड में बोहोत सारे स्टूडेंटस खड़े है जिम्होने युनिफोर्म पहनी --

ब्लू ग्रीन सभी कलर के कलर्स का यूज हुआ है इस उन्होंने घर बनाया है जो--

और आस पास यहाँ पर बहोत सारी दुकाने--

यहाँ सामने एक बड़ी वाइट कलर की बिल्डिंग हें जिस में बहोत सारे--

यहां पर एक पार्क है पार्क में बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं कुछ बड़े पेड़ भी हैं।

यहाँ पर एक वाइट कलर का ए_सी लगा हुआ हैं और यहाँ पर एक जो रूम हैं ब्राउन और ब्लू कलर का हैं।

लगाया गया है वो जो ब्लू कलर की दिवार है उसके साइड में ही --